ये एक रोड है रोड पे गाड़ी चल रही है बहुत सारी गाडी चलती है यहाँ साइड में बहुत सारी दुकाने भी है बहुत सारे पेड़ भी लगे हुए है लोग यहाँ पे आते है दुकान में सामान खरीदते है बहुत ही अच्छी जगह हैं।

ये एक स्विमिंग पूल है यह स्विमिंग पूल में बहुत सारे लड़के लड़कियां स्विमिंग करने के लिए --

ये घर बनाने के लिए मिट्टी की खुदाई की गयी है बहुत सारे पीलर गड़ने के लिए गड्ढे बनाए गए हैं बहुत सारे मिट्टी खोदें गए हैं लेबर - मिस्त्री लगे हुए हैं पीलर काट रहे हैं ईटें बहुत गिराए गए हैं ।

यहां पर बहुत पुरानी घर है यह घर अभी खंडार हो चुकी है बहुत सारे आदमी इस घर में पहले रहते थे अभी ये खंडहर में बदल चुकी है इसके ईटे सब गिर चुके हैं और यहां पे काफी जंगल हो गया है।

यह एक बहुत बड़ा रेस्ट्रोरेंट है यह रेस्ट्रोरेंट में बहुत सारे टेबल कुर्सी लगाये गये है यह रेस्ट्रोरेंट मे बहुत सारे पंखा लगी हुई है यहाँ पे बहुत लोग खाना खाने के लिए रेस्ट्रोरेंट में आते है यह रेस्ट्रोरेंट में बहुत अच्छी खाना दे --

बंशी लिए और एक आदमी करताल लिए और एक आदमी सारंगी लिए और एक आदमी बैठे हुए है सभी कुछ न कुछ --

यह बहुत ही सुंदर दिख रहे हैं बहुत सारे लाइट से सजाये गई है फूलो से सजाये गए हैं बहुत सारे आदमी आये हुए --